ये एक बस स्टैंड है बस को बस एक नया है इसको फ़ूलो से सजाया गया है गेंदे के फूल लगाए गए हैं।

जगह पे हरा-हरा घास-फुस छांट के डाल दिया गया है उसके के मुँह और नाक में रस्सी बंधा है उसके गले में भी रस्सी बंधा हैं ।

टंकी है यहाँ बहोत सारी गाड़िया चल रही है यहाँ पे बिजली के खम्बे है यहाँ मोटरसाइकिल भी हैं।

मेला हो रहा है जैसे लग रहा है यहाँ पे बहोत सारी भीड़ उमड़ गई है देखने के लिए--